और यहाँ गन्ने रखे हुए बहुत से अंधेरा है यहां टॉर्च बहुत सारे लगे हुए हैं।

जहां पे केक रखे हुए हैं और बाहर एक कैश काउंटर है यहां पर कैशियरस बैठा हुआ है और भी लोग वहां खड़े हैं।

इस फोटो में सामने एक यूनिवर्सल बुक सेंटर दिख रहा है बोर्ड ।

ऊपर लिखा हुआ है इंग्लिश में कुछ --

फोटो में एक बिल्डिंग के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है जिस पर एस_एस कोचिंग लिखा हुआ है व्हाईट कलर से ब्लू कलर का बोर्ड है।